पीछे कि ओर टाइल्स लगी हुई है।

नीचे एक ईट वाला टाइल्स लगे हुए हैं साईड में दो पीलर दिखाई दे रहे हैं जिनकी कलर व्हाइट हैं।

पुट्टी की गई है दिवाल में बड़ा सा पोस्टर चिपकाया गया जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे डंडे की मदद से एक पोस्टर लगाया गए है जिसमें लिखा हुआ सदाबहार बिहारिनी दुकान।

यहां पे एक चेयर दिखाई दे रही जो रेड कलर की है यहां पर एक बड़ा सा टेबल बनी हुई लकड़ी की मदद से बनी हुई है।

छत का दृश्य बना हुआ है जो सीमेंट की मदद से बनी हुई है जिसके ऊपर --

पीछे कॉर्नर ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहे हैं यहां एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है जिसकी कलर ब्लैक एंड रेड है।

इसके कपड़े का कलर ग्रे एवं येलो है।

ऊपर से शीशे की मदद से बनाए गए हैं।

टाइल्स भी लगी हुई है यहां पे काफी सारे टेबल नजर आ रहे हैं जिसकी कलर ब्लैक है।

यहां पर दीवार में दो फोटो रखे हुए है जहां पे फूल से मढ़े गए हैं।

यह एक मार्केट का दृश्य बना हुआ है।

यहां पे कोटो लगा हुआ है जिसकी कलर ब्लू है।

यह एक इस्टील दुकान का दृश्य बना हुआ है जहां पे लकडी की मदद से कबड बनाए गए हैं जिसमे काफी सारे सामान रखे हुए है।

दीवार में व्हाईट कलर की वॉल पुटी भी की गई हैं दीवार में एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पे दीवार में खिड़की नजर आ रही है जो शीशे की मदद से बनी हुई है।

की ओर टाइल्स लगे हुए हैं ऊपर की ओर फैन --